जहाँ पर पानीयों में बैठ के हम भी यह देख रहे हैं कि पानी की लहरे किधर से किधर जा रही है इन पहाड़ों के बीच अच्छी रिव्यु आ रही है देखने में आनंद आ रही है मन को शांति मिल रही हैं।

इससे किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है क्योंकि यह तुरंत डेबिट क्रेडिट एंड पासबुक तुरंत उपलब्ध कराती हैं।